जिनके ऊपर काफी सारी लाल बैंगनी काली रंग की डिजाइन बनी हुई है।

इसके ऊपर लिखा है ए के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन ।

ऊपर की तरफ काफी सारे पंखे लगे हुए हैं दीवार पे फूल लगे हैं।

नाव में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं काफी लोग रस्सी बांध रहे हैं।

बाहर की तरफ से एक ईटों से बना हुआ टावर है मकान के ऊपर जिसके बीच बीच में चारों तरफ डिजाइन बनी हुई है हरे रंग की।

सामने कितने छोटा पार्क है पार्क के बीच में एक बड़ा पेड़ लगा है।

क्लीनिक है जीसमें सामने एक बेड पड़ी है जिसके ऊपर हरे रंग की चादर है।

उसमें कांच लगी है उसके ऊपर काफी सारी चीजें रखी हैं समोसा मिर्चा ब्रेड पकोड़ा।

इनके बीच में काफी सारे चॉकलेट रखे हैं।

मेज के किनारे सफेद और काले रंग की कुर्सियां पड़ी हुई है।

बाहे की तरफ काफी सारे लोग खड़े हैं जिनके हाथ में पोस्टर है।

जमीन पे तीन लोग बैठे हुए है स्कूल के पीछे की तरफ काफी सारे पेड़ लगे है।